जो बहुतअच्छे लग रहे है इन जंगल की लकडीया भी काफी बड़ी बड़ी है यहा सूरज की रोशनी की रोशनी दिख रही है यहा धूप --

यहाँ बड़े बड़े लं लंबे लंबे लाइट के बे खंबे भी नजर आ रहे है और आसमान भी काफी हदतक दिख रहा है ये जगह कितनी खूबसूरत और शांति पूर्वक दिख रही --

मिलते होंगे यहाँ पर नकली पेड़ पौधे भी रखे गए है काँच के शोकेस मे और कुछ शोपीस भी रखे गये है। बच्चे है--

ही हुई है और पत्ते की भी बेंचे रखी हुई है जमीन पे काफी अता घासे भी नजर आ रही है और बड़े बड़े दरक्क भी नजर आ रहे है।

यहा पर बहुत सारे बड़े बड़े जीने दिख रहे है ये ग्राउंड काफी बड़ा है काफी हद तक इस मे जालिया भी नजर आ रही है जीने भी नजर आ रही है रोड पर एक आ--